लेडी यहां पे पथरी के ऊपर बैठी हुई है बैग डाल ले के ऑरेंज कलर के कपड़े हैं और उसकी वाटर बॉटल की--

रखी बोर्डज हैं यहाँ पे नीचे पेपर्स पे यहाँ पे प्रिंट्स भी निकाले जाते हैं और आधार कार्ड लिंक भी यहाँ पे किया बहोत सारा ऑनलाइन वर्क यहाँ पे किया जाता हैं ऑफिस मे--

ये एक सीधी सी सड़क है आजू बाजू--

और ये एक बड़ा सा पार्क दिख रहे है यहां पे बहोत सारे लेडिज है यहां पे वॉकिंग करने के लिए और यहां पे टेहेल रहे है यहां पे बाद --

और यहां पे पहाड़ा भी है आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ भी--

ऑफिस है यहां पे जिओ का बोर्ड लगाया गया है यहां पे बाजू पिलर्स को--

हां यहां पे बेंचेस भी है बेड्स भी है यहां पर बैठने के लिए टूल्स है और बाजू साइड --

बाउंड्री खींची गई है कट्टे डाले गए हैं और यहां पे बड़े बड़े लाइट के खंभे और फोकसर चालू है ये रात का वक्त है दिख रहा है यहां पे--

पीकर्स भी रखे हुए हैं। यहां पर बहुत सारे ट्यूब लाइट्स हैं।

ये ये एक बड़ा सा मैदान है और यहां पे बहुत सारे लोग हैं और फुटबॉल क्रिकेट यहां पे खेल रहे हैं।

यहां पे लाइनिंग मारी गई है पाउडर के द्वारा।